और इसमें पटरी एक साइड खाली है।

एक साइकल पर एक स्कूटी खड़ी हुई है।

और ऊपर वर कुछ डिजाइनदार पट्टी पट्टी कलर बने हैं।

और एक ट्रैक्टर आ रहा है जिसके ऊपर साउंड बंधा है।

बीच में नेम प्लेट पे कुछ नहीं लिखा है।

जिसमें एक आदमी अपनी दोनो टूटी हुई टांगे लिए पड़ा है।

एक आदमी थाली लिए हुए हैं।

बाहर वॉल एक सफेद कलर की बाउंड्री है।